बेडम किनारा पर हमते कुछ लोग भी न दिखेण लग्यां पार फणी कुछ नदी अर वख फणा हमते कुछ पहाड़ भी न दिखेण लग्यां।

ये चित्र मां हमते एक घर का भितर दिखेण लग्युं जैमा हमते भौत सुन्दर सजावट छ दिखेण लगीं दीवारों पर हमते बहुत सारा गुब्बारा छन दिखेण लग्यां।

अर भौत सारा लोग भी छन दिखेण लग्यां दिखेण से यु माछु कु बाजार छ लगणु पार मा हमते एक इमारत कर दिखेण छ लगीं।

दिखेण सी लगदु नौनियाल पाणी छ पीणू नौनियाल का हाथ म एक घड़ी भी दिखेण च लगी ओर पोर हमते बड़ा बड़ा ढुंगो कु पहाड़ च दिखेण लग्यूं यु मणा कुछ डाला भी दिखेण च लग्या।